सोलर एनर्जी के बोर्ड्स है सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमे काफी सारी बाइक्स खड़ी है और एक बरगद का पेड़ है।

और मेल मालगाड़ी के बगल में कुछ छोटे-मोटे से हरी-भरी झाड़ियां मुझे दिखाई दे रही है।